पर मूर्ति बनी हुई है शिव जी की और पेड़ लगे हुए है।

और झूले हैं सरकना है और पेड़ भी लगे हुए हैं। पेड़ के आजू-बाजु में ईट की बाउंड्री है और पिलर है और खम्भे लगे हुए हैं।

चटाई बिछी हुई है बिजली का मीटर दिख रहा है। काँच का गेट दिख रहा है अम अंदर फेन है।